और कुछ लोग भी दिख रहे है।

और मुझे एक गाड़ी भी दिख रही है।

और मुझे कुछ लाइट भी दिख रही है।

मुझे एक टेंपो भी दिख रहा है।

और उसमें एक रेड फुल दिख रहा हैं।

और कुछ स्प्रे भी दिख रहा है।

ग्राउंड में हरी हरी घास भी दिख रही है।

फुटबॉल खेलते हुए भी दिख रहे है और पेड़ पौधे भी दिख रहे है।

मुझे एक दारू की दुकान दिख रही है।

मुझे एक कार दिख रही है।

और मुझे कुछ बस भी दिख रही है।

मुझे एक मंदिर दिख रहा है।

मुझे एक पहाड़ दिख रहा है।

मुझे एक होटल दिख रही है।

भी दिख रही हैं और टेंट में कुछ डेकोरेशन भी कर रखा है फ्लावर --

मुझे एक गार्डन दिख रहा है।

और मुझे कुछ टंकियां भी दिख रही है।

मुझे एक कपड़े की दुकान दिख रही है।

मुझे एक पोस्टर भी दिख रहा है पंखा भी दिख रहा है।

मुझे एक मकान दिख रहा है।

मुझे एक मूवी ठेटर दिख रहा है।

मुझे एक मच्छी मार्केट दिख रहा है।

और कुछ घर भी दिख रहे--

मुझे एक झींगा मार्केट दिख रहा है।